यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

उसी के ऊपर दो टंकी है जो कि ब्लैक कलर के है।

यह एक टायर का दृश्य तथा इस टायर का कलर ब्लैक है।

तथा पीछे रोड है जो कि उस पे धूप के परछाई आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो वाइट एंड येलो और ऑरेंज कलर के--

तथा यहां पे सीढ़ी भी है जोकि ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बहुत सारे लकड़ी की मदद से डेस्क बने है।

यह एक दुकान का दृश्य बनाया गया है तथा यहां पे लकड़ी की मदद से डेस्क बनाए हुए हैं।

और इस पे कार के बहुत सारे सामान भी रखे गए--

यह एक दुकान का दृश्य है।

कलर का है और ब्राउन कलर का--

पीछे में ईंटें और लोहे के मदद से पूल और ब्रिज बनाए गए हैं।

और उसके अ पास ताला भी है।

और फटा हुआ जींस भी पहेना हुआ है।

और उसी के बगल में एक पंखा भी है जो ब्लैक कलर के हे।

जो कि मूर्ति के ऊपर कपड़े रखे हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है तथा इसके ऊपर बैनर भी लगे हुए हैं।

तथा बहुत सारे लाइट जल रहे हैं।

अरे यहां पे दीवाल का कलर व्हाइट है।

यह एक काम करते हुए व्यक्ति का दृश्य है।

यहां इस घर की लंबाई बहुत ही ज्यादा है।

जो की लकड़ी की मदद से बनाए गए हैं।

यह एक डी_जे का दृश्य है जो कि डी_जे के ऊपर लाइट भी जल रहे हैं जो कि रेड कलर के हैं।

महिला भी खड़ी है जो कि गोल्डन कलर का साड़ी और ग्रे कलर का साड़ी पहनी हुई है।

तथा यहां पे छोटे छोटे ऊपर में बल्ब लगा है।

और डब्बे के ऊपर बहुत स प्रकार के चीज़ लिखे गए हैं।

यह एक बाइक का दृश्य है तथा यहां पे बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं।

यह एक जिम के अंदर का दृश्य है।

लाइट वगैरा और भी कई प्रकार के काम होते हैं।

देखिए बड़े बड़े पोल भी लगे हैं और पीछे में एक घर है।

तथा यहां पे एक चेयर भी रखा गया है जो की ब्लैक कलर का--

ता है पीछे में बहुत सारी खिड़की है।

तथा पीछे में एक और गाड़ी है जो कि ब्लैक कलर का है।